नीचे पेड़-पौधे दिख रहे हैं दो-चार लोग भी दिख रहे हैं| जैसे लग रहा है यहाँ पर घुमने हुए आए हुए है | यहाँ पर नीचे ईंटो-ईंटो का भी टीले टीले टाइप बने हुए हैं जोकी बहुत सुंदर लग रहे हैं।

लकड़ी का दिख रहा है नीचे जो स्टील की चेयर दिख रही है जो की लोहे की भी लग रही है। एक ब्लैक कलर की चेयर दिख रही है फुगे--

पास में कुछ लेडीज़ दिख रही है जो अब पीछे की और बातें करते हुए दिख रही है| साइड में कुछ लड़के भी दिख रहे हैं पीछे घर दिख रहा है जिस पर पतरे लगे --

रेलिंग लगाई हुई है रेलिंग स्टील की या लोहे की लग रही है| इसमें बीच-बीच में खंबे है जो लोहे के लगे हुए हैं| पेड़ दिख रहे हैं जो की हरे कलर के दिख रहे हैं| नीचे मिट्टी दिख रही है जिसमें कंकड़ दिख रहे हैं| हरी-हरी झाड़ियां दिख रही है कुछ जानवर दिख रहे हैं| पीछे खुला आसमान--

जैसा कि हम देख सकते हैं एक लड़का दिख रहा है| ये लड़का सामने की और देख रहा है| इसने शर्ट पहना हुआ है जो की पर्पल कलर का दिख रहा है| इसने कान के गले में हैंडफ्री भी पहन रखी है जो कान में पहनते हैं ।

जो लड़का है माइक पकड़कर सबको बोल रहा है जिसमे गाना या कुछ कविता सुना रहा है बच्चे बैठे हुए है|

जैसा कि हम देख सकते हैं हमको एंट्रेंस गेट दिख रहा है| यह जो गेट है शादी का गेट दिख रहा है| अंदर किसी शादी का होल बना हुआ है और यह बाहर का गेट है जिसमें से अंदर एंट्री दिख रही है | साइड में दूल्हा-दुल्हन की फोटो दिख रही है जो की बहुत ही सुंदर लग रहे--

बच्चे खेलते हुए दि रहे हैं फिसल पट्टी से नीचे झूलते हुऐ दिख रहे है पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहा है एक मल्टी दिख रही है जो क्रीम कलर की है तीन लकड़ियाँ बैठी हुई है जो पट्टी पर बैठी हुई है पर बैठी हुई है एक लड़का ऊपर बैठा हुआ है एक आदमी जिसने सफेद टी शर्ट महिला जिसने --

-- नाम लिख हुआ है इंग्लिस में नाम लिखा हुवा है एक आदमी खड़ा खड़ा है जो हाथ पीछे करके खड़ा है एक लेडिस है जिस की सी हाथ में थेली और पर्स हैं जो की दूसरी लेडिस है उसके हाथ में सिर्फ --

उसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है| हाथ में मोबाइल है जो इसका आँखें जो बाहर की ओर देख रही हैं।

जैसा कि हम देख सकते हैं हमको सामने एक नदी दिख रही है| नदी में पानी भरा हुआ दिख रहा है | सामने कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है की खेलने के लिए आए हुए हैं।